how to place an order for a book पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: book के लिए ऑर्डर
basket order बंद करना
और shipment प्राप्त करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करने के लिए koha में superlibrarian bella से login करें
सबसे पहले हम receiving an order को इनेबल करके शुरू करेंगे
हम इस tutorial में बाद में इस जानकारी का उपयोग करेंगे
koha administration पर जाएँ
global system preferences पर click करें
acquisitions preferences पेज खुलता है
preference section में acqcreateitem के लिए dropdown से placing an order को receiving an order में बदलें
पेज के शीर्ष में save all acquisitions preferences पर click करें
चलो आगे बढ़ें
koha homepage पर जाएँ acquisitions पर जाएँ और plus new vendor पर click करें
नया पेज add vendor खुलता है
company details section में name पर जाएँ
और field में powai book agency type करें
कृपया ध्यान दें: हम वैसे ही कई विक्रेताओं को जोड़ सकते हैं
contact details जैसे विवरण भरें मैंने यहां कुछ विवरण भर दिए हैं
आप भी ऐसा ही कर सकते हैं
चैकबॉक्स को चैक करना याद रखें: primary acquisitions contact
primary serials contact
contact about late orders और
contact about late issues
इन चेकबॉक्स पर क्लिक करने से विक्रेता को इन विकल्पों से संबंधित ईमेल सूचनाएं प्राप्त होंगी
यदि आपके पास किसी विशेष फ़िल्ड के लिए कोई जानकारी नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें
ordering information सेक्शन मेंlist prices are के लिए koha डिफॉल्ट रूप से rupee चुनता है
इसी तरह invoice prices are के लिए koha डिफॉल्ट रूप से rupee चुनता है
tax number registered के लिए yes चुनें
list prices के लिए include tax चुनें
invoice prices के लिए include tax चुनें
मैं tax rate को ऐसे ही छोड दूँगी
फिर मैं discount 10% और delivery time 14 days प्रविष्ट करूंगी
मैं notes फिल्ड को खाली छोड़ दूंगी
सभी विवरण भरने के बाद पेज के निचले हिस्से में save पर क्लिक करें
एक नया पेज खलुता है
अब विक्रेता के नाम के समीप plus new basket पर क्लिक करें
नए पेज add a basket to powai book agency पर basket name के लिए विवरण भरें
मैं iitb/st/books/201710 जोड़ूँगी
कुछ विवरण डिफ़ॉल्ट रूप से koha द्वारा भर दिए जाएंगे
डिफ़ॉल्ट विवरण billing place delivery place और vendor में किसी भी बदलाव के लिए ड्रॉपडाउन से आवश्यक विकल्प का चयन करें
internal note और/या vendor note जोड़ें यदि कोई है तो
internal note में मैं for biology section टाइप करुँगी
vendor note में मैं to be delivered on 22 may 2017 टाइप करुँगी
आवश्यकतानुसार orders are standing पर क्लिक करें मैं चैकबॉक्स को खाली छोड़ दूंगी
सभी विवरण भरने के बाद पेज के नीचे save बटन पर क्लिक करें
खुलने वाले नए पेज पर plus add to basket टैब पर क्लिक करें
add order to basket डायलॉग बॉक्स खुलता है
अब निम्न ऑप्शन्स से ऑर्डर करने के लिए एक पुस्तक का चयन करें
मैं from a new empty record पर क्लिक करुँगी
शीर्षक new order वाला एक नया पेज खुलता है
पुस्तक का शीर्षक प्रविष्ट करें जिसे ऑर्डर किया जाना है
मैं industrial microbiology टाइप करुँगी
अगला accounting details है
quantity में 5 प्रविष्ट करें
fund में koha डिफॉल्ट रूप से books fund चुनता है
यहां याद रखें यदि एक से अधिक फंड उपलब्ध हैं तो हम आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं
इसके बाद currency के लिए विवरण भरें
यहाँ koha डिफॉल्ट रूप से rupee चुनता है
आप ड्रॉपडाउन से अपनी आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं
vendor price में 1000 प्रविष्ट करें
अगला uncertain price है
यदि आप कीमत के बारे में अनिश्चित हैं तो इस चेकबॉक्स को चुनें मैं इसे खाली छोड़ दूंगी
अगला tax rate है koha tax rate में डिफ़ॉल्ट रूप से 0% चुनता है
मैं discount मैं 20% चुनूंगी
ध्यान दें कि koha replacement cost 1000 की स्वतः गणना करेगा
budgeted cost में 800
total में 4000 और actual cost में 000
ध्यान दें कि replacement cost और actual cost को एडिट कर सकते हैं
internal note और vendor note टाइप करें यदि कुछ हो तो
मैं statistic 1 और statistic 2 को खाली छोड़ दूंगी
और फिर पेज के नीचे save पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स के साथ नया पेज प्रदर्शित होता है
warning! you will exceed 1000% of your fund
do you want to confirm this order yes i confirm पर क्लिक करें
basket विवरण basket iitb/st/books/201710 2 for powai book agency के साथ नया पेज खुलता है
यह विभिन्न टैब भी दिखाता है
अब हम सीखेंगे कि basket कैसे बंद करना है
उसी basket details पेज में close this basket टैब पर क्लिक करें
इसका मतलब है कि order अंतिम है और संबंधित विक्रेता को भेजा जा सकता है
are you sure you want to close basket iitb/st/books/201710 के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
yes बटन पर क्लिक करें
विक्रेता powai book agency के नाम से एक नया पेज प्रदर्शित होता है
इस पेज को अभी तक बंद न करें क्योंकि हमें यहां कुछ और चीजें सीखनी है
आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि shipment कैसे प्राप्त करना है
उसी पेज पर receive shipment टैब पर क्लिक करें
receive shipment from vendor powai book agency के साथ एक नया पेज खुलता है
receive a new shipment के नीचे vendor invoice में iitb/st/books/201710 भरें
koha shipment date स्वत: ही चुनता है
ध्यान दें कि रसीद की तारीख shipment date है
मैं shipment cost और shipment fund को छोड़ दूंगी
पेज के नीचे next button पर click करें
अन्य पेज receipt summary for powai book agency खुलता है
नीचे स्क्रोल करें और पेज के नीचे finish receiving पर क्लिक करें
शीर्षक invoice: iitb/st/books/201710 के साथ एक ओर पेज खुलता है
shipment date पहले प्रविष्ट किए गए विवरणों के अनुसार koha द्वारा भरी हुई है
और मैं billing date में 05/23/2018 चुनूंगी
मैं shipping cost को खाली छोड़ दूंगी
close पर क्लिक करें और फिर पेज के नीचे save बटन पर क्लिक करें
एक नयां पेज invoice has been modified खुलता है
go to receipt page पर क्लिक करें
अब आप receipt summary for powai book agency देखने में सक्षम होंगे
आप koha से log out कर सकते हैं
koha इंटरफ़ेस के ऊपरी दाएँ कोने पर जाएँ
spoken tutorial library पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से logout चुनें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने book के लिए ऑर्डर
basket order बंद करना और shipment प्राप्त करना सीखा
नियतकार्य के रूप में books के लिए budget बनाएँ
इसके तहत civil engineering के लिए funds बनाएँ
मौजूदा विक्रेता powai book agency के माध्यम से एक पुस्तक का ऑर्डर करें
निम्नलिखित लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सारांश देता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमइआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद